ऊपर झंडा है और उसके आत्रफ जो है वो उम्म वाल है है-आ गुलाबी रंग का और यहाँ आ ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेमोरियल या म्यूजियम हो और यहाँ लोग इन्हे देखने के लिए आते हैं

उम अच्छा ही है आ अच्छे लाभदायक है हमारे लिए यहां उम अभी लोग नहीं आए हैं या शायद थक के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं दुसरी साइड में।

पानी तो उतना साफ नीला नहीं है वह भी हरा-भरा दिख रहा है जैसे कोई आगे फार्मेशन होता है बहुत दिनों के बाद पानी होता है वैसे दिख रहा है।

भाई ऊपर बहुत पंखे है जोकि सफेद रंग के हैं और डेस्क तो काले हुए हैं और नीले रंग के हैं और इधर लोग आके अपना फर्स्ट पार्टसिपेट करते हैं।

यहां पे बहोत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और पावर करके है और एक टब भी पड़ा है। पता नहीं वो टब किसके लिए है।

यहाँ कुछ पुराने और ऑडियो फोन ऐसे रखा है और यह पुरा पुराने टाइपराइटर रखे हुई हैं और यहाँ लोग इसे देखने के लिए म्यूजियम्स में आते हैं। यहाँ आजकल उतना काम तो नहीं आ --

यह एक बुद्ध का इमेज है उसके ऊपर में कुछ टोपी जैसा है उसके ऊपर झंडा है और आसपास भी कुछ पत्थर रखा गया है और लोग बहुत प्रसन्न देकर --

हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी वैसे ही रहना चाहिए।

यहाँ पर एक घर है और घर के बाहर एक बोहत बड़ा गेट है और उनका नाम भी स्टॉल में काले कलर स्टॉल में लिखा हुआ है। काला कलर गेट है और नीचे जो एंट्रेंस है वो डार्क कलर --